introduction to pan card के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
pan card के बारे में
pan card का structure और प्रमाणिकता
pan card की जरूरत और
अपने pan card के बारे में जानना
pan का मतलब permanent account number होता है
pan card ऐसा दिखता है
यह 10 digit का एल्फा न्यूमेरिक combination है जो क़ानूनी संस्था द्वारा इशू किया जाता है
यह भारत के आयकर विभाग द्वारा इशू किया जाता है
pan card आवंटित करने के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पहचान करना और उस संस्था के आर्थिक लेनदेन की जानकारी रखना है
pan card के तथ्य
pan विशिष्ट राष्ट्रीय और स्थाई होता है
यह पते में बदलाव से अप्रभावित रहता है
एक से अधिक pan कार्ड रखना गैर क़ानूनी है
कौनकौन pan card प्राप्त कर सकता है
व्यक्ति
company
huf यानि hindu अनडिवाइडेड family
trust और अन्य कई निकाय
हमें pan card की आवश्यकता क्यों होती है
pan card महत्वपूर्ण photoआईडी proof की तरह card करता है
pan card bank का account खोलने में मदद करता है
माल के खरीदने और बेचने में मदद करता है आदि
pan card प्राप्य कर देने योग्य वेतन पे accounting उद्देश्य के लिए उपयोग होता है
आयकर returns भरने में सहायक होता है
शेयर trading के लिए डीमैट account खोलने के लिए एक documentary proof के रूप में उपयोग होता है
bank से 50000 से अधिक रुपये निकालने के लिए documentary proof के rs में उपयोग होता है
यह एक tool है जो कर बक़ायदार पर नियंत्रण रखने में it dept की मदद करता है
यह अपरोक्ष रूप से उनकी credit history का पता लगाकर किया जाता है
यह tds यानि tax deductions at source प्राप्त करने के लिए documentary proof के रूप में उपयोग होता है
passport के लिए उपयोगी documentary प्रूफ है
एड्रेस बदलने के लिए
और कुछ अन्य सम्बंधित डॉक्युमेंट्स प्राप्त करने के लिए
50 000 से अधिक रूपए के fixed डिपॉज़िट के लिए
25 000 से अधिक रूपए के hotel bills और यात्रा के खर्चे को चुकाने में
credit card issue करने की application के लिए
telephone connection की application के लिए
pan structure निम्न प्रकार है
पहले पांच characters अक्षर अगले चार नंबर्स आखिरी characters अक्षर
पहले the अक्षर aaa से zzz तक के अक्षरों का अनुक्रम होते हैं
चौथा character card रखने वाले के type को बताता है प्रत्येक मूल्यांकन विशिष्ट होता है
person के लिए p
company के लिए c
huf यानि hindu अनडिवाइडिड family के लिए h
firm के लिए f
aop यानि association of persons के लिए a
trust के लिए t
boi यानि body of इन्डविजूअल्स के लिए b
local authority के लिये l
artificial juridicial person के लिए j और
government के लिए g
pan का पाँचवाँ character है
व्यक्तिगत pan card की स्थिती में व्यक्ति के सरनेम या last नेम का पहला character
प्रदर्शित image में सरनेम yadav है इसलिए पाँचवाँ character y है या
company/huf/firmया any प्रकार के pan cards की स्थिति में entity/trust/society/organization का name
प्रदर्शित image में trust का name shanoz shanoz है
इसलिए पाँचवाँ character s है
आखिरी character alphabetic check digit है
pan card issue होने वाली तारीख़ pan card पर दायीं तरफ the जाती है
निम्न link पर जाकर आप pan numbers का सत्यापन या प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं
अब सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
pan कार्ड के बारे में
pan card का structure और प्रमाणिकता
pan card की ज़रूरत और
अपने pan card के बारे में जानना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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं